में कुछ खराबी आ गई है तो इसको ठीक करने के लिए एक मैकानिक है जो लाल रंग का ड्रेस पहन कर उस गाड़ी को ठीक कर रहा है।

चित्र में एक होटल हैं और वहाँ टेबल लगा है।

इस चित्र में एक टेबल रखा हुआ है।

जो देखने में अच्छी लग रही है लकिन वहाँ एक भी व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिस चित्र में --

सीढ़ीयां हैं और एक-एक घर टाइप का भी दिख रहा है वहाँ पर कुछ --

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिस चित्र में बोहोत बड़े सरक --

और व्यक्ति तीन हैं जो दो व्यक् --

चित्र में दो मंजिला घर है और उसके अगल वगल में भी घर है।

वहाँ पर एक रास्ता भी है। लेकिन उस रास्ते में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

और उसका गेट ब्लू और सफेद रंग से रंगा हुआ है और उसके अगल-बगल में कुछ सीढ़िया भी हैं।

उस मक्के को लेने के लिए एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है और वह मक्का वैसे ही --